इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो लाइट पीच कलर की दिखाई दे रही है। दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

अर् दिखाई दे रहे हैं सूखी पत्तियां दिखाई दे रही हैं पुलिस दिखाई दे रही है कुछ जेंट्स और लेडिस दिखाई दे रही --

ओड दिखाई दे रहा है साइकिल्स दिखाई दे रही है पौधे दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रही है।

और आसमान दिखाई दे रहा है। गेट दिखाई दे रहा है। बकेट्स दिखाई दे रही हैं। टेबल दिखाई दे रहा है। सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

पंडाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। टेंट दिखाई दे रहा है। पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। गन्ने दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड पर मनोज मोबाइल लिखाया दिखाई दे रहा है और --

और दो लेडिस और तीन जेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियां दिखाई दे रही --

इस फोटो में हमें एक हाल दिखाई दे रहा है। लाइट्स दिखाई दे रही हैं। कर्टन्स दिखाई दे रहे हैं और चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में पहाड़ दिखाई दे रहे। कुछ लोग दिखाई दे रहे और पत्थर दिखाई दे रहे। कुछ छोटे कुछ बड़े पत्थर दिखाई दे रहे --

सूखी पत्तियां दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है पौधे दिखाई दे रहा है घांस दिखाई दे रही है।

पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। विंडोज दिखाई दे --

उस पर बैंक ऑफ़ बड़ोदा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई दे रहा है। टेबल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक हॉल दिखाई दे रहा है। रेड व्हाइट और पिंक बलूंस दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बड़ी- सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और काँच दिखाई दे रहा हैं।

गार्डन में एक लेडी खड़ी दिखाई दे रही है। उनके हाथ में पाइप दिखाई दे रहा है। पानी दिखाई दे रहा है।

लेडिज दिखाई दे रही हैं। जेंट्स दिखाई दे रहा हैं। बड़ी-बड़ी गंजिया दिखाई दे रही हैं।

ऑरेंज और रेड दिखाई दे रहा है व्हाट दिखाई दे रही है ब्लू दिखाई दे रही है सूरज दिखाई दे रहा है।